गमले में बहुत सारे पौधे भी रखे हुए है और हरे कलर का मैदान भी दिख रहा हैं।

इस तस्वीर में एक प्लेट के अंदर चावल ककड़ी एक कटोरी में सब्जी --

और दूसरी की कटोरी में भी पनीर की सब्जी और एक कटोरी में दाल रखी हुई है।

इस मकान में प्लास्टर नहीं हुआ है। खंबो के सहारे इसका लेंटर भी डाला है।

तस्वीर में लकड़ी के अलमारी पर बहुत सारे किताबें और पुस्तकें दिखाई दे रही हैं पास ही रखी अलमारी पर और भी सामान दिख रहा है।

यह तस्वीर एक जेन्स अंडर गारमेंट की दुकान की है। जिसमें लकड़ी के अलमारी में बोहत सारे बॉक्स बने हुए हैं। सभी बॉक्सों में --

यह तस्वीर की तिरंगे की है जो थिएटर के अंदर फहराया जा रहा है इसके --

और दिवालो पर सफेद दलाल रंग देखा जा सकता है।

पासी एक अन्य व्यक्ति भी चेयर पर बैठा है जो उन तीनों व्यक्तियों को देख रहा है।

यह तस्वीर चर्च के अंदर की है। जिसमें प्लस के सिंबल पर जीसस क्राइस्ट का स्टेचू बना हुआ है।

साथ ही सामने लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।

कुछ व्यक्तियों का कपड़ों का ड्रेस हरे रंग का है जबकि कुछ का लाल काले रंग का है।

और लोहे के तार की फेंसिंग वाल है।

जमीन पर दूसरे पैर पर मोड़ के बैठी हुई है। इनका एक हाथ आसमान की तरफ तो दूसरा कान की तरफ है।

यह तस्वीर सफेद कलर के सीमेंट के बने हुए पुल की है। जिसके नीचे बड़ी-बड़ी हरे कलर की घास दिख रही है।

नदी के एक किनारे पर छोटे-छोटे मकान दिख रहे हैं और साफ आसमान खुला दिख रहा है। नदी में पानी है।